जिसमें एक व्यक्ति बाहर से अपने मोबाइल से फोटो घिचवा रहा है।

यह इमेज एक ब्यूटी पार्लर का है जहाँ कई तरह तरह के क्रीम लगे हुए हैं।

यह इमेज एक मस्जिद का है जिसमें कई तरह-तरह के दीवारो पर एवम पिलरो पर पैटर्न बनाये गये हैं।

यह इमेज एक जिम का है जहां नीचे मे ---

जो की बहुत ही ऊंचे मकान में है यह काफी ही सुंदर यहां का पह डिजाइन है।

यह अभी बंद है यहाँ अभी कोई नजर नही आ रहा है।

यह इमेज एक का है। ये एक नदी किनारे है। यह नदी जब बढ़ जाता है --

एक पंखा लगाया गया है यहां का पिलर में तरह-तरह के पैटर्न बनाये गये हैं।

एक सैलून का है जिसका नाम अपना साईं सैलून है यह देवघर कॉलेज देवघर झारखंड का है।

यह इमेज एक एजेंसी का है जिसका अभी-अभी तुरंत ही उद्धघाटन किया गया है। यह काफी ही सुन्दर लग रहा है ये एजेंसी ।.यहाँ पर कई तरह-तरह के लाल और नीले रंग के बैलून लगाए गए हैं और इसके दीवार पर तरह-तरह के पिक्चर --